यहा पर एक सब्जी का मार्केट दिख रहा है जहा पर बहोत सारे पत्ता गोबी मुली मूंगा और मटर मिर्ची और साइड मे कुछ पत्ता गोबी--